ये एक अंकल है जहाँ फोटो के लिए तैयार है मुस्‍कुरा रहे में हाथ रखे हुए टाई पहने हुए है लेकिन हर तरह का सब चीज़ पहने हुए हैं जिसमें फोटो इनका अच्‍छा आ सके लेकिन है जो बिल्‍कुल भी पसंद नही है अ पीछे तिल है।

जो बहुत अच्‍छा लग रहा है दिल के सामने फोटो खिचवा रहे हैं बहुत अच्‍छा हैं ।